जोकि एक बहुत आनंदित सा जगह है। ये----

इस तस्वीर में दिखाया गया है की यह एक जिम यानि की व्यायामशाला की फोटो है।

चूंकि एक बहुत ही सुंदर और आकर्षित लग रहा है।

इस तस्वीर को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते है की यह एक आइडिआ फोर (four) जी का ऑफिस है।

आइडिया फोर (four) जी एक नेटवर्क है जो को मोबाईल का नेटवर्क है।

दिखाई गयी तस्वीर तस्वीर जो की है एक मैदान की है और यह पिच जो दिखाई जा रहा है एक क्रिकेट का पिच है जो की समतल है।

जिसमे हर तरह के स्पोर्ट्स का सामान जो है मिलता है जिसमे क्रिकेट का बैट बैडमिंटन और सारे तरह के सामान जो है यहाँ पे आसान में मिल जाता है।

इस तस्वीर में दिखाया गया है की यहाँ किसी चिड़ियाघर का तस्वीर है और चिड़ियाघर में हर तरह के पशु पक्षी होते हैं।

इस तस्वीर में दिखाया गया एक पी.टी का तस्वीर है जिसमें बच्चे एक योग व्यायाम कर रहे हैं।

इस तस्वीर मे दिखाई गई एक किराना की दुकान है जिसका नाम है अमा किराना दुकान एण्ड जेनरल स्टोर ।

चूंकि ट्रैक के ऊपर से होता है और यह इसलिए बनाया जाता है ताकि दो प्लेटफार्म के बीच में लोग ऊपर से आसानी से किसी दूसरे प्लेटफार्म पर जा सकते हैं।